जहां पदाधिकारी बैठते हैं या डॉक्टर बैठते हैं डॉक्टर अगर बैठते हैं तो यहां पे इलाज होती है।

ये कोई जगह का तस्वीर लग रही है यहां पे बहुत सारे बैरिकेडिंग लगी--

और काली कुर्सियां हैं जग है गेट लगी हुई है आदमी कोई दिख नहीं रहा है यहां पे।

और काफी कोई आदमी नजर आ नहीं रहा है काफी सारे नवै हैं।

मछली छोटी भी है बड़ी भी है और ये मछली मार्केट है वहां पे कुछ लोग हैं जो मछली बेच रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मछली खरीद रहे हैं।

ये एक जंगल की तस्वीर लग रही है और काफी सारे पहाड़ है काफी सारे जंगले हैं।

काफी सुन सान जगह लग रहा है यहां किसी आदमी को देखा नहीं जा रहा है।